ये ये जिम क्षेत्र में यह जिम काफी सुंदर लग रहा है ये जिम काफी बड़ा है। यहां पर कोई बाउंस है।

सड़क काफी बड़ा दिख रहा है। सड़क के सामने काफी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही है। यहां काफी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है यहां पर यहां पर कुछ लोग भी खड़े दिख रहे है जो कपडे- वपड़े --

ये काफी बना काफी सुंदर लग रहा है यहां पर एक माता काली की फोटो ना जा रही है। जो काफी सुंदर विकराल रूप लिए हुए इसके बगल में कुछ और देवी देवता का फोटो काफी सुंदर लग रहा --